दे रहे है कुछ बड़े बड़े मकान भी दिख रहे है आसमान रंगीन दिखाई दे रहा है ।

एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है | मैदान मे एक मकान दिखाई दे रहा है | मकान से एक अ अ एक आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है|

दिखाई दे रहा है पेड़ पौधो की छाया नदी मे दिखाई दे रही है | ऊपर आसमान --